ऊपर बहुत सारी लाइटें भी जग रही हैं।

एक मोटरसाइकल और एक गाड़ी जा रही है पीछे हरा भरा घास है।

तीन चार मूर्तियां रखी हुई है।

रियल जूस और एक कप रखा हुआ है।

यहां पर बहुत वृक्ष भी हैं जिनके नीचे पेंट किया हुआ है।

यहां पर बहोत लोग भी हैं।